वहाँ पे रेड कलर के हैं।

ये स्कूल के बच्चे है इन्होने एक प्रोजेक्ट बनाया हैं जिसमे चार मकान बने हुए है।

ये फ्रेशर्स पार्टी चल रही है शायद सब लोग जा चुके हैं।

दूल्हा-दुल्हन बैठे हुए हैं जिनकी रेड कलर की ड्रेस दिखाई दे रही है दुल्हे की रेड टोपी दिखाई दे रही है।

एंड ये टेबल रखे हैं ब्लैक कलर में और रेड कलर --

रखा हुआ है और अंदर पिंक कलर है ये पिंक कलर कि शीट रखी हुई है यहाँ पर।

यहाँ पे अ वश होते हैं।

यहाँ पे अ शादी का कोई प्रोग्राम हो रहा है उसका अ डेकोरेशन की गयी है टेबलस और चेयर्स में।

ब्लू कलर का मास्क पहना हुआ हैं एंड वाइट कलर का एप्रेन पहना हुआ हैं एंड ये लड़का जो हैं हेयर कट करवा रहा हैं।